गमले दिखाई दे रहें हैं एक औरत दिखाई दे रही है।

कुछ दिवार लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं।

सड़क दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है गाड़ी दिखाई दे रहा है।

दरवाज़ा दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं।

इस चित्र में हमें आसमान दिखाई दे रहा है।

गुब्बारे दिखाई दे रहे है चप्पल दिखाई दे रहा है।